आदमी बैठे हुए हैं यहां पे मेज पे बहुत सारे बैग रखे हुए वे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं यहां पे बहुत सारी फाइलें भी --

रखी हुई है यहां पे पानी की बॉटल भी रखी हुई है और सामने खिड़की बनी उस पे पर्दा लगा और ऊपर पंखा चल रहा है।

यहां पर एक लड़की फोन पे बात करी सामने कंप्यूटर रखा हुआ है।

यहां पे एक लेडिस खड़ी हुई है उसने सूट सलवार पहना हुआ है।

ये एक दुकान है जहां पे बहोत सारे चश्मे--

ये एक रुम की तसवीर है यहां पे दो बेड रखे हुए हैं।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

रक्खे हुए हैं यहां पे बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं।

यहा पे लाइटिंग लगी हुई है दीवालो पर बहोत सारी पोस्टर लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं यहां पे--

और दुकान लगा हुआ है यहां पे एक बिजली का बोर्ड लगाया हुआ--

के लिए डिनर टेबल लगा यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं ऊपर पंखा लगा हुवा हैं यहां पे सोफे भी लगे हुए हैं।

यहां पे एक पार्क है यहां पे बहोत सारे--

यें एक क्लीनिक की तस्वीर यहां पे एक बेड --

कुछ मशीनें भी है यहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं।